मम पकछी दिख रहे हैं दो ब्लैक कलर की चोंच दिख रही वाइट कलर की हल्का-सा ग्रीन कलर दिख रहा पीछे गोल बना हुआ दिख रहा है ब्लैक कलर में इसमें में भी कछ पिंक कलर रखा हुआ दिख रहा।

सामान रखा हुआ दिख रहा है पंखा दिख रहा है अलमारी दिख रही है अलमारी में पैकेट रखी दिख रही है।

जेन्स खड़े हुए दिख रहे --

बहुत सारे दिख रहे मिट गिट्टी तार वगैरा दिख रहे दिख रहे।

गाड़ियां दिख रही है गाड़ियों पे कैप रखा हुआ दिख रहा।

परदे लगे हुए दिख रहा है | पेड़ पौधे दिख रहा है | जेन्स खड़े हुए दिख रहा है | और बहुत सारे सामान रखे हुए दिख रहा है | मकाने दिख रही है | लाइट लगी दिख रही है | इधर रोड दिख रहा है |

बहुत कलर दिख रहा है | आसमानी कलर पीला कलर तोता कलर पिंक कलर क्रीम कलर | खम्बे दिख रहे हैं बिजली वाले उम् दिख रहा है |

बाल्टी रखी-रखी दिख रही हैं तीन गाड़ियां दिख रही हैं बहुत सारे जेंट्स स्टूल वगैरह दिख रहे हैं बॉक्स रखे हुए दिख रहे हैं अलवारी दिख रहे हैं अलवारी में --

मछलियां रखी हुई दिख रही है ब्लैक कलर की ग्रीन कलर की ऑरेंज कलर की व्हाइट कलर की जामुनी कलर की पिंक कलर की रेड कलर की दरी बिछी हुई दिख रही बैग रखे हुए दिख रहे हैं।

स्टार बना हुआ दिख रहा है उसका हाथ एक पैर पकड़ती हुए दिख रहा है एक आगे की ओर दिख रहा है उसकी जीन्स में डिज़ाइन बनी हुए दिख रही है पा --

ग्रीन कलर दिख रहा है जमुनी कलर दिख रहा है कलर दिख रहा है | टाइल्स लगी हुई दिख रही है ब्लैक कलर की लाइन खींची हुई दिख रही है |